के पर ये झाड़ियों में कुछ फूलें नजर आ रही हैं।

और कुछ व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यह तेज बुक स्टॉल का दुकान है दुकान के बाहर एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।